ऊपर में दीवाल पे कुछ लिखा हुआ भी --

और ऊपर लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ है उसपे महेंद्रा लिखा हुआ है ।

और नीचे में गाड़ियां खड़ी है दो गाड़ी खड़ी हैं ।

दोनों कुर्सी पे बैठे है एक आदमी है ।